और जो हरियाली में घूम रहा है और हरियाली पीछे है जो पानी में है और वो उसके आंख है ब्राउन कलर के।

सर पे लिया हुआ है उसके बाद यहां पे चेयर है लाल कलर की और वो भी इसमें येलो कलर की पिल्लो हैं उसके सामने है गादी डाली हुई है जो--

लड़का बैठे हुआ है जो सर की तरफ देख रहा है उसका हाथ दूसरी कुर्सी पे है अ दूसरी कुर्सी खाली है वहाँ पे एक खिड़की है अ द अं खिड़की को उजाला नजर आ रहा है।